ये मूर्ति बनाई गई है जो एक आदमी हाथ को उपर किये हुआ है।

जो हरी भरी पत्तिया सामने एक साइड पे बड़े बड़े पहाडे है और सफ़ेद रंग का आसमान है।